दो तीन मरी हुई है ऐसा लग रहा है जैसे उसे काट कर रखा हुआ है।

और हाथ मे धनुष लिए हुए है तलवार है ।

अभी आजू बाजू मे बहुत सारे पेड़ हैं फल के दुकान--

यह एक मेडिकल हैं जहाँ पर अलग प्रकार की दवाई रखी हुई हैं ।

यो एक रूम है वहां पे बेड रखा हुआ है बेड के दो चद्दर है दो तकिया है उसके बाजू मे एक टेबल है।

यहाँ अ शादी का मंडप दिखाई दे रहा है जो बहुत ही सुंदर है अलग तीन प्रकार --

तीन प्रकार के फलों से सजाया गया है जैसे व्हाइट है पिंक --

पिक्चर में बहुत सारे भगवान की मूर्तियां है और अलग अलग प्रकार की मूर्ति है।